छवि खुले क्षेत्र की है छवि में कई तरह की सब्जी रखी गए हैं।

एक महिला भी है जो पीछे हैं।

छवी में कई तरह के नीले और सफेद रंग के डब्बे रखे गए हैं जो एक के ऊपर रखे गए हैं।

यह छवि खुले क्षेत्र का है छवि में कई तरह के पेड़ है पेड़ हरे रंग का है।

इस छवि में एक प्रकार का भोजन है भोजन कले और सफेद रंग का है।

रैक पर काले रंग के डिब्बे रखे गए हैं नीचे की दीवार का रंग नीला है।

दुकान में रैक मे कई तरह के समान भी रखे गए है।

यह छवि खुले क्षेत्र का है छवि रात के समय का है छवि में एक जगमगाता हुआ मंदिर है।

आस पास कुछ जमीन भी है जो भूरे रंग का है।

यह छवि एक मछली दुकान के अंदर का है।

छवि में कुछ लोग भी हैं जो खड़े हैं छवि में एक बड़ा टावर है टावर के आसपास कई तरह की इमारत है।

दीवार पर पोस्टर है जिस पर पब्लिक स्कूल लिखा गया है।

पोस्टर पर धीरज कंप्यूटर सेंटर एवं मोबाइल कॉर्नर लिखा गया है।

सभी में दीवार का रंग सफेद है दीवाल पर पंखे लटकाए गए हैं पंखे का रंग सफेद है।

यह छवि खुले क्षेत्र का है छवि में एक इमारत है।

इमारत की दीवाल का रंग सफेद है इमारत पर नीले रंग की खिड़कियां है।

छवि में कई तरह के लोग बैठे हुए हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं।

सभी में एक दरवाजा है दरवाजे का रंग सफेद है।

इमारत पर चार गुंबद है गुंबद का रंग हरा है।

छवि मैं एक काले रंग की कुर्सी है और एक लाल और सफेद रंग की कुर्सी है।